कपड़े की दुकान हैबहुत सारा कपड़ा है यहाँ पॉलीथिन मे पैक किया हुआ ।

साइड में एक टंकी जैसा थोड़ी-सी बनाए हुई है।

बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ हैं यह भी।

और औरत भी है पीछे ।

सामने में जूता-मोजा पहन के टाई भी लगा के --

यहाँ एक झंडा फराने वाला एक जगह है बना हुआ ।

एक लाइट भी लगी हुई है और साइड मे एक स्लाइस की बोतल रखी हुई है।

और तीरंगा फराने का जो ये हैं बना हुआ चबूतरा यहाँ पे बना हुआ है।

यहाँ रखा हुआ है पाला हुआ है ताकि कछुआ की प्रजाति जो है लुप्त न हो जाये।

बड़ी सी मस्जिद है यहाँ ।

और व्यक्ति टहलने के लिए छोटा - छोटा सा टाइल्स लगा के ये रास्ता बनाया हुआ है यहाँ पे।